इसका मुआयना करते हुए एक इंजीनियर दिख रहे हैं । वहां पर फुटवेयर्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं और हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं । बिल्डिंग्स वहां पर सामने में नजर आ रही है।

यहाँ पर कोई पूजा चलती हुई नजर आ रही है और इसे नॉर्थ साइड पे काफी ज्यादा मनाया जाता है और ये उ पानी में है वो--

एक सूर्यास्त का समय लग रहा है जहाँ पर ये बहोत ज्यादा पानी नजर आ रहा है जो एक कैनाल का लग रहा है| वहीं पर--

बहोत बड़ा होल दिखाई दे रहा है। ऊपर में जो है वो सिल्वर कलर का छत है रंगा हुआ वहीं पर एक स्क्रीन नजर आ रही है। और स्तंभ भी जो है--

एक बिल्डिंग पिंक कलर की नज़र आ रही है। वहां पर ऑटो रिक्शा ज चलते हुए दिख रहे हैं| जहाँ पर ग्रीन कलर के ऑटो रिक्शा ज हैं वहाँ पे बाइक्स नज़र आ रहे हैं| बाइक सवार दिख रहे हैं और कुछ लोग भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं।

यहां पर बहुत पुरानी हवेली नजर आ रही है जो की खंडर बनी हुई है| कुछ लोग वहाँ पर आए हैं जो वहाँ पर चोटी के ऊपर में लोग खड़े हैं और काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं।

बहुत बड़ी जगह नजर आ रही है ग्राउंड की | वहाँ पर हरी घांस सुखी घांस नजर आ रही है लाल मिट्टी दिखाई दे रही है| बहुत सारे वहाँ पर छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं जो--

दिखाई दे रही है जो ग्रीन कलर की है| वहीं पेड़ नज़र आ रहे हैं और हरे पौधे नज़र आ रहे हैं हरी घांस दिखाई दे रही है सुखी घांस नजर आ रही है और लाल मिट्टी दिखाई दे रही है।